टीने का उसके दुकान है।

वो एक के उपर एक करके रखे गए हैं।

इस इमेज में एक स्मॉल स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

इसमें एक इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहा है।

इसमें दो चम्मच रखे गए हैं।

ग्राउंड में छोटी छोटी घासें हैं।

इस इमेज में एक नदी बह रही है।

साइड में कुछ अनार भी रखे गए हैं।

पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है।

सामने में एक जालीनुमा खिड़की है।

इसमें एक ब्राउन और एक डार्क ब्राउन कलर की कुर्सियां है।

शटर पर एक ताला लगा हुआ है जो ओपन है शटर कुछ कपड़े टांगे हुए हैं।

इस इमेज में एक नहर दिखाई दे रही है।

नहर पे एक छोटा सा पूल बनाया गया है जिसकी रेलिंग सफेद रंग से रंगी गई है।

घर के पीछे ढेर सारे बडे़ बडे़ पेड़ दिखाई दे रहे--

यहां पे लोगों और महिलाओं की भीड़ है सामने में सामने में मंच बनाया गया है।

यह इमेज एक जिम की है।

पीछे वो उठाने वाला है जिसमें जिससे लोग जिम करते है।